मेरे प्यारे देशवासियो आप सभी को नमस्कार
कोटिकोटि नमस्कार
और मैं कोटिकोटि नमस्कार इसलिए भी कह रहा हूँ कि 100 करोड़ वैक्सीन दोसे के बाद आज देश नए उत्साह नई ऊर्जा से आगे बढ़ रहा है
हमारे वैक्सीन कार्यक्रम की सफलता भारत के सामर्थ्य को दिखाती है सबके प्रयास के मंत्र की शक्ति को दिखाती है
साथियो 100 करोड़ वैक्सीन दोसे का आंकड़ा बहुत बड़ा जरुर है लेकिन इससे लाखों छोटीछोटी प्रेरक और गर्व से भर देने वाली अनेक अनुभव अनेक उदाहरण जुड़े हुए हैं
बहुत सारे लोग पत्र लिखकर मुझसे पूछ रहे हैं कि वैक्सीन की शुरुआत के साथ ही कैसे मुझे यह विश्वास हो गया था कि इस अभियान को इतनी बड़ी सफलता मिलेगी
मुझे ये दृढ़ विश्वास इसलिए था क्योंकि मैं अपने देश अपने देश के लोगों की क्षमताओं से भलीभांति परिचित हूँ
मैं जानता था कि हमारे हेल्थकेयर वर्कर्स देशवासियों के टीकाकरण में कोई कोरकसर नहीं छोड़ेंगे
हमारे स्वास्थ्यकर्मियों ने अपने अथक परिश्रम और संकल्प से एक नई मिसाल पेश की उन्होंने इनोवेशन के साथ अपने दृढ़ निश्चय से मानवता की सेवा का एक नया मानदंड स्थापित किया
उनके बारे में अनगिनत उदाहरण हैं जो बताते हैं कि कैसे उन्होंने तमाम चुनौतियों को पार करते हुए अधिक से अधिक लोगों को सुरक्षा कवच प्रदान किया
हमने कई बार अख़बारों में पढ़ा है बाहर भी सुना है इस काम को करने के लिए हमारे इन लोगों ने कितनी मेहनत की है एक से बढ़कर एक अनेक प्रेरक उदाहरण हमारे सामने हैं
मैं आज मन की बात के श्रोताओं को उत्तराखंड के बागेश्वर के एक ऐसी ही एक हेल्थकेयर वर्कर पूनम नौटियाल जी से मिलवाना चाहता हूँ
साथियो ये बागेश्वर उत्तराखंड की उस धरती से है जिस उत्तराखंड ने शतप्रतिशत पहला दोसे लगाने का काम पूरा कर दिया है
उत्तराखंड सरकार भी इसके लिए अभिनन्दन की अधिकारी है क्योंकि बहुत दुर्गम क्षेत्र है कठिन क्षेत्र है
वैसे ही हिमाचल ने भी ऐसी कठिनाइयों में शतप्रतिशत दोसे का काम कर लिया है
मुझे बताया गया है कि पूनम जी ने अपने क्षेत्र के लोगों के वैक्सिनेशन के लिए दिनरात मेहनत की है
पूनम जी नमस्ते
सिर प्रणाम
पूनम जी अपने बारे में बताइए जरा देश के श्रोताओं
सिर मैं पूनम नौटियाल हूँ
सिर मैं उतराखंड के बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में चानी कोराली सेंटर में कार्यरत हूँ सिर
मैं एक अन्म हूँ सिर
पूनम जी मेरा सौभाग्य है मुझे बागेश्वर आने का
अवसर मिला था वो एक प्रकार से तीर्थ क्षेत्र रहा है वहाँ पुरातन मंदिर वगैरह भी मैं बहुत प्रभावित हुआ था सदियों पहले कैसे लोगों ने काम किया होगा
पूनम जी क्या आपने अपने क्षेत्र के सभी लोगों का वैक्सिनेशन करवा लिया है
हाँजी सिर सभी लोगों का हो चुका है
आप को किसी प्रकार की दिक्कत का भी सामना करना पड़ा है क्या
सिर हम लोग जैसे बारिश होती थी वहां पे और रोड ब्लॉक हो जाती थी
सिर नदी पार कर के गए हैं हम लोग न और सिर घरघर गए हैं जैसे एनएचसीवीसी के अंतर्गत हम लोग घरघर गए हैं
जो लोग सेंटर में नहीं आ सकते थे जैसे बुजुर्ग लोग और दिव्यांग लोग गर्ववती महिलाएं धात्री महिलाएं ये लोग सिर
लेकिन वहाँ तो पहाड़ों पर घर भी बहुत दूरदूर होते हैं
तो एक दिन में कितना कर पाते थे आप
सर किलोमीटर का हिसाब 10 किलोमीटर कभी 8 किलोमीटर
खैर ये जो तराईं में रहने वाले लोग हैं उनको ये समझ नहीं आयेगा 810 किलोमीटर क्या होता है
मुझे मालूम है
के पहाड़ के 810 किलोमीटर मतलब पूरा दिन चला जाता है
लेकिन एक दिन में क्योंकि ये बड़ा मेहनत का काम है और वैक्सिनेशन का सारा सामान उठा कर के जाना
आपके साथ कोई सहायक रहते थे कि नहीं
हाँजी टीम मेंबर हम पाँच लोग रहते सिर न
तो उसमे डॉक्टर हो गए हो फिर अन्म हो गई फार्मासिस्ट हो गए आशा हो गई और दाता एंट्री आपरेटर हो गए
अच्छा वो दाता एंट्री वहाँ कनेक्टिविटी मिल जाती थी या फिर बागेश्वर आने के बाद करते थे
सर कहींकहीं मिल जाती कहींकहीं बागेश्वर आने के बाद करते थे हम लोग
अच्छा मुझे बताया गया है पूनम जी कि आपने आउट ओएफ थे वे जाकर लोगों का टीका लगवाया
ये क्या कल्पना आई आपके मन में विचार कैसे आया और कैसे किया आप ने
हम लोगों ने पूरी टीम ने संकल्प लिया था कि हम लोग एक भी व्यक्ति छूटना नहीं चाहिए
हमारे देश से कोरोना बीमारी दूर भागनी चाहिए
मैंने और आशा ने मिलके प्रत्येक व्यक्ति की गाँवwise ड्यू लिस्ट बनाई फिर उसके हिसाब से जो लोग सेंटर में आये उनको सेंटर में लगाया
फिर हम लोग घरघर गए हैं
सिर फिर उसके बाद छूटे हुए थे जो लोग नहीं आ पाते सेंटर में
अच्छा लोगों को समझाना पड़ता था
हाँजी समझाया हाँजी
लोगों का उत्साह है अभी भी वैक्सीन लेने का
हाँजी सर हाँजी
अब तो लोग समझ गए हैं
फर्स्ट में बहुत दिक्कत हुई हम लोगों को
लोगों को समझाना पड़ता था कि ये जो वैक्सीन है सुरक्षित है और असरदार है हम लोग भी लगा चुके हैं तो हम लोग तो ठीक है आप के सामने हैं और हमारे स्टाफ ने सब ने लगा लिया है तो हम लोग ठीक हैं
कहीं पर वैक्सीन लगने के बाद किसी की शिकायत आई
ऐसा तो नहीं हुआ
कुछ नहीं हुआ
सब को संतोष था
कि ठीक हो गया
चलिए आपने बहुत बड़ा काम किया है और मैं जानता हूँ ये पूरा क्षेत्र कितना कठिन है और पैदल चलना पहाड़ों पे
एक पहाड़ पे जाओ फिर नीचे उतरो फिर दूसरे पहाड़ पे जाओ घर भी दूरदूर उसके बावजूद भी आपने इतना बढ़िया काम किया
धन्यवाद सिर मेरा सौभाग्य आप से बात हुई मेरी
आप जैसे लाखों हेल्थ वर्कर्स ने उनके परिश्रम की वजह से ही भारत सौकरोड़ वैक्सीन दोसे का पड़ाव पार कर सका है
आज मैं सिर्फ आपका ही आभार व्यक्त नहीं कर रहा हूँ बल्कि हर उस भारतवासी का आभार व्यक्त कर रहा हूँ जिसने सबको वैक्सीनमुफ्त वैक्सीन अभियान को इतनी ऊँचाई दी कामयाबी दी
आपको आपके परिवार को मेरी बहुतबहुत शुभकामनाएँ
मेरे प्यारे देशवासियो आप जानते हैं कि अगले रविवार 31 अक्तूबर को सरदार पटेल जी की जन्म जयंती है
मन की बात के हर श्रोता की तरफ से और मेरी तरफ से मैं लौहपुरुष को नमन करता हूँ
साथियो 31 अक्तूबर को हम राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं
हम सभी का दायित्व है कि हम एकता का संदेश देने वाली किसीनाकिसी गतिविधि से जरुर जुड़ें
आपने देखा होगा हाल ही में गुजरात पुलिस ने कच्छ के लखपत किले से स्टेच्यू ओएफ यूनिटी तक बाइक रैली निकाली है
त्रिपुरा पुलिस के जवान तो एकता दिवस मनाने के लिए त्रिपुरा से स्टेच्यू ओएफ यूनिटी तक बाइक रैली कर रहे हैं
यानी पूरब से चलकर पश्चिम तक देश को जोड़ रहे हैं
जम्मूकश्मीर पुलिस के जवान भी उरी से पठानकोट तक ऐसी ही बाइक रैली निकालकर देश की एकता का संदेश दे रहे हैं
मैं इन सभी जवानों को सैल्यूट करता हूँ
जम्मूकश्मीर के ही कुपवाड़ा जिले की कई बहनों के बारे में भी मुझे पता चला है
ये बहनें कश्मीर में सेना और सरकारी दफ्तरों के लिए तिरंगा सिलने का काम कर रही हैं
ये काम देशभक्ति की भावना से भरा हुआ है
मैं इन बहनों के जज़्बे की सराहना करता हूँ
आपको भी भारत की एकता के लिए भारत की श्रेष्ठता के लिए कुछनकुछ जरुर करना चाहिए
देखिएगा आपके मन को कितनी संतुष्टि मिलती है
साथियो सरदार साहब कहते थे कि हम अपने एकजुट उद्यम से ही देश को नई महान ऊँचाइयों तक पहुंचा सकते हैं
अगर हममें एकता नहीं हुई तो हम खुद को नईनई विपदाओं में फंसा देंगे
यानी राष्ट्रीय एकता है तो ऊँचाई है विकास है
हम सरदार पटेल जी के जीवन से उनके विचारों से बहुत कुछ सीख सकते हैं
देश के सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भी हाल ही में सरदार साहब पर एक पिक्टोरियल बायोग्राफी भी पब्लिश की है
मैं चाहूँगा कि हमारे सभी युवासाथी इसे जरुर पढ़ें
इससे आपको दिलचस्प अंदाज में सरदार साहब के बारे में जानने का अवसर मिलेगा
प्यारे देशवासियो जीवन निरंतर प्रगति चाहता है विकास चाहता है ऊँचाइयों को पार करना चाहता है
विज्ञान भले ही आगे बढ़ जाए प्रगति की गति कितनी ही तेज हो जाए भवन कितने ही भव्य बन जाए लेकिन फिर भी जीवन अधूरापन अनुभव करता है
लेकिन जब इनमें गीतसंगीत कला नाट्यनृत्य साहित्य जुड़ जाता है तो इनकी आभा इनकी जीवंतता अनेक गुना बढ़ जाती है
एक प्रकार से जीवन को सार्थक बनना है तो ये सब होना भी उतना ही जरुरी होता है इसलिए ही कहा जाता है कि ये सभी विधाएं हमारे जीवन में एक कैटलिस्ट का काम करती हैं हमारी ऊर्जा बढ़ाने का काम करती हैं
मानव मन के अंतर्मन को विकसित करने में हमारे अंतर्मन की यात्रा का मार्ग बनाने में भी गीतसंगीत और विभिन्न कलाओं की बड़ी भूमिका होती है और इनकी एक बड़ी ताकत ये होती है कि इन्हें न समय बांध सकता है न सीमा बांध सकती है और न ही मतमतांतर बांध सकता है
अमृत महोत्सव में भी अपनी कला संस्कृति गीत संगीत के रंग अवश्य भरने चाहिये
मुझे भी आपकी तरफ से अमृत महोत्सव और गीतसंगीतकला की इस ताकत से जुड़े ढ़ेरों सुझाव आ रहे हैं
ये सुझाव मेरे लिए बहुत मूल्यवान हैं
मैंने इन्हें संस्कृति मंत्रालय को अध्ययन के लिए भेजा था
मुझे खुशी है कि मंत्रालय ने इतने कम समय में इन सुझावों को बड़ा गंभीरता से लिया और उस पर काम भी किया
इन्हीं में से एक सुझाव है देशभक्ति के गीतों से जुड़ी प्रतियोगिता आज़ादी की लड़ाई में अलगअलग भाषा बोली में देशभक्ति के गीतों और भजनों ने पूरे देश को एकजुट किया था
अब अमृतकाल में हमारे युवा देशभक्ति के ऐसे ही गीत लिखकर इस आयोजन में और ऊर्जा भर सकते हैं
देशभक्ति के ये गीत मातृभाषा में हो सकते हैं राष्ट्रभाषा में हो सकते हैं और अंग्रेजी में भी लिखे जा सकते हैं
लेकिन ये जरुरी है कि ये रचनाएं नए भारत की नई सोच वाली हों देश की वर्तमान सफलता से प्रेरणा लेकर भविष्य के लिए देश को संकल्पित करने वाली हों
संस्कृति मंत्रालय की तैयारी तहसील स्तर से राष्ट्रीय स्तर तक इससे जुड़ी प्रतियोगिता कराने की है
साथियो ऐसे ही मन की बात के एक श्रोता ने सुझाव दिया है कि अमृत महोत्सव को रंगोली कला से भी जोड़ा जाना चाहिए
हमारे यहाँ रंगोली के जरिए त्योहारों में रंग भरने की परंपरा तो सदियों से है
रंगोली में देश की विविधता के दर्शन होते हैं
अलगअलग राज्यों में अलगअलग नामों से अलगअलग थीम पर रंगोली बनाई जाती है
इसलिए संस्कृति मंत्रालय इससे भी जुड़ा एक नेशनल कॉम्पिटिशन करने जा रहा है
आप कल्पना करिए जब आजादी के आंदोलन से जुड़ी रंगोली बनेगी लोग अपने द्वार पर दीवार पर किसी आजादी के मतवाले का चित्र बनाएंगे आजादी की किसी घटना को रंगों से दिखाएंगे तो अमृत महोत्सव का भी रंग और बढ़ जाएगा
साथियो एक और विधा हमारे यहाँ लोरी की भी है
हमारे यहाँ लोरी के जरिए छोटे बच्चों को संस्कार दिए जाते हैं संस्कृति से उनका परिचय करवाया जाता है
लोरी की भी अपनी विविधता है
तो क्यों न हम अमृतकाल में इस कला को भी पुनर्जीवित करें और देशभक्ति से जुड़ी ऐसी लोरियां लिखें कविताएं गीत कुछनकुछ जरुर लिखें जो बड़े आसानी से हर घर में माताएँ अपने छोटेछोटे बच्चों को सुना सके
इन लोरियों में आधुनिक भारत का संदर्भ हो 21वीं सदी के भारत के सपनों का दर्शन हो
आप सब श्रोताओं के सुझाव के बाद मंत्रालय ने इससे जुड़ी प्रतियोगिता भी कराने का निर्णय लिया गया है
साथियो ये तीनों प्रतियोगिताएं 31 अक्तूबर को सरदार साहब की जयंती से शुरू होने जा रही हैं
आने वाले दिनों में संस्कृति मंत्रालय इससे जुड़ी सारी जानकारी देगा
ये जानकारी मंत्रालय की वेबसाइट पर भी रहेगी और सोशल मीडिया पर भी दी जाएगी
मैं चाहूँगा कि आप सभी इससे जुड़े
हमारे युवासाथी जरुर इसमें अपनी कला का अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करें
इससे आपके इलाके की कला और संस्कृति भी देश के कोनेकोने तक पहुंचेगी आपकी कहानियाँ पूरा देश सुनेगा
प्यारे देशवासियो इस समय हम अमृत महोत्सव में देश के वीर बेटेबेटियों को उन महान पुण्य आत्माओं को याद कर रहे हैं
अगले महीने 15 नवम्बर को हमारे देश के ऐसे ही महापुरुष वीर योद्धा भगवान बिरसा मुंडा जी की जन्मजयंती आने वाली है
भगवान बिरसा मुंडा को धरती आबा भी कहा जाता है
क्या आप जानते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है इसका अर्थ है धरती पिता
भगवान बिरसा मुंडा ने जिस तरह अपनी संस्कृति अपने जंगल अपनी जमीन की रक्षा के लिय संघर्ष किया वो धरती आबा ही कर सकते थे
उन्होंने हमें अपनी संस्कृति और जड़ों के प्रति गर्व करना सिखाया
विदेशी हुकूमत ने उन्हें कितनी धमकियाँ दीं कितना दबाव बनाया लेकिन उन्होनें आदिवासी संस्कृति को नहीं छोड़ा
प्रकृति और पर्यावरण से अगर हमें प्रेम करना सीखना है तो उसके लिए भी धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा हमारी बहुत बड़ी प्रेरणा हैं
उन्होंने विदेशी शासन की हर उस नीति का पुरजोर विरोध किया जो पर्यावरण को नुकसान पहुचाने वाली थी
गरीब और मुसीबत से घिरे लोगों की मदद करने में भगवान बिरसा मुंडा हमेशा आगे रहे
उन्होंने सामाजिक बुराइयों को खत्म करने के लिए समाज को जागरूक भी किया
उलगुलान आंदोलन में उनके नेतृत्व को भला कौन भूल सकता है इस आंदोलन ने अंग्रेजो को झकझोर कर रख दिया था
जिसके बाद अंग्रेजों ने भगवान बिरसा मुंडा पर बहुत बड़ा इनाम रखा था
ब्रिटिश हुकूमत ने उन्हें जेल में डाला उन्हें इस कदर प्रताड़ित किया गया कि 25 साल से भी कम उम्र में वो हमें छोड़ गए
वो हमें छोड़कर गए लेकिन केवल शरीर से
जनमानस में तो भगवान बिरसा मुंडा हमेशाहमेशा के लिए रचेबसे हुए हैं
लोगों के लिए उनका जीवन एक प्रेरणा शक्ति बना हुआ है
आज भी उनके साहस और वीरता से भरे लोकगीत और कहानियां भारत के मध्य इलाके में बेहद लोकप्रिय हैं
मैं धरती आबा बिरसा मुंडा को नमन करता हूं और युवाओं से आग्रह करता हूं कि उनके बारे में और पढ़ें
भारत के स्वतंत्रता संग्राम में हमारे आदिवासी समूह के विशिष्ट योगदान के बारे में आप जितना जानेंगे उतनी ही गौरव की अनुभूति होगी
मेरे प्यारे देशवासियो आज 24 अक्टूबर को उन डे यानि सयुंक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है
ये वो दिन है जब सयुंक्त राष्ट्र का गठन हुआ था सयुंक्त राष्ट्र की स्थापना के समय से ही भारत इससे जुड़ रहा है
क्या आप जानते हैं कि भारत ने आजादी से पहले 1945 में ही सयुंक्त राष्ट्र के चार्टर पर हस्ताक्षर किए थे
सयुंक्त राष्ट्र से जुड़ा एक अनोखा पहलू ये है कि सयुंक्त राष्ट्र का प्रभाव और उसकी शक्ति बढ़ाने में भारत की नारी शक्ति ने बड़ी भूमिका निभाई है
194748 में जब उन ह्यूमन राइट्स का यूनिवर्सल डिक्लेरेशन तैयार हो रहा था तो उस डिक्लेरेशन में लिखा जा रहा था अल्ल मेन एआरई क्रिएटेड इक्वल
लेकिन भारत के एक डेलीगेट ने इस पर आपत्ति जताई और फिर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन में लिखा गया अल्ल ह्यूमन बेइंग्स एआरई क्रिएटेड इक्वल
ये बात जेंडर इक्वालिटी की भारत की सदियों पुरानी परंपरा के अनुरूप थी
क्या आप जानते हैं कि श्रीमती हंसा मेहता वो डेलीगेट थी जिनकी वजह से ये संभव हो पाया उसी दौरान एक अन्य डेलीगेट श्रीमती लक्ष्मी मेनन ने जेंडर इक्वालिटी के मुद्दे पर जोरदार तरीके से अपनी बात रखी थी
यही नहीं 1953 में श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित उन जनरल असेम्बली की पहली महिला प्रेसिडेंट भी बनी थीं
साथियो हम उस भूमि को लोग हैं जो ये विश्वास करते हैं जो ये प्रार्थना करते हैं
शान्तिरन्तरिक्षॅं शान्ति
शान्तिरोषधय शान्ति
शान्तिर्विश्र्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति
शान्तिरेव शान्ति सा मा शान्तिरेधि
शान्ति शान्ति
भारत ने सदैव विश्व शांति के लिए काम किया है
हमें इस बात का गर्व है कि भारत 1950 के दशक से लगातार सयुंक्त राष्ट्र शांति मिशन का हिस्सा रहा है
गरीबी हटाने क्लाइमेट चंगे और श्रमिकों से संबंधित मुद्दों के समाधान में भी भारत अग्रणी भूमिका निभा रहे है
इसके अलावा योग और आयुष को लोकप्रिय बनाने के लिए भारत व्हो यानि वर्ल्ड हेल्थ आर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर काम कर रहा है
मार्च 2021 में व्हो ने घोषणा की थी कि भारत में पारंपरिक चिकित्सा के लिए एक ग्लोबल सेंटर स्थापित किया जाएगा
साथियो सयुंक्त राष्ट्र के बारे में बात करते हुए आज मुझे अटल जी के शब्द भी याद आ रहे हैं
1977 में उन्होंने सयुंक्त राष्ट्र को हिंदी में संबोधित कर इतिहास रच दिया था
आज मैं मन की बात के श्रोताओं को अटल जी के उस संबोधन का एक अंश सुनाना चाहता हूँ
सुनिए अटल जी की ओजस्वी आवाज
यहां मैं राष्ट्रों की सत्ता और महत्ता के बारे में नहीं सोच रहा हूँ
आम आदमी की प्रतिष्ठा और प्रगति मेरे लिए कहीं अधिक महत्व रखती है
अंतत हमारी सफलताएं और असफलताएं केवल एक ही मापदंड से नापी जानी चाहिए कि क्या हम पूरे मानव समाज वस्तुत हर नरनारी और बालक के लिए न्याय और गरिमा की आश्वस्ति देने में प्रयत्नशील हैं
साथियों अटल जी की ये बातें हमें आज भी दिशा दिखाती हैं
इस धरती को एक बेहतर और सुरक्षित प्लैनेट बनाने में भारत का योगदान विश्व भर के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है
मेरे प्यारे देशवासियो अभी कुछ दिन पहले ही 21 अक्टूबर को हमने पुलिस स्मृति दिवस मनाया है
पुलिस के जिन साथियों ने देश सेवा में अपने प्राण न्योछावर किए हैं इस दिन हम उन्हें विशेष तौर पर याद करते हैं
मैं आज अपने इन पुलिसकर्मियों के साथ ही उनके परिवारों को भी याद करना चाहूंगा
परिवार के सहयोग और त्याग के बिना पुलिस जैसी कठिन सेवा बहुत मुश्किल है
पुलिस सेवा से जुड़ी एक और बात है जो मैं मन की बात के श्रोताओं को बताना चाहता हूं
पहले ये धारणा बन गई थी कि सेना और पुलिस जैसी सेवा केवल पुरुषों के लिए ही होती है
लेकिन आज ऐसा नहीं है
बुरेऊ ओएफ पोलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के आंकड़े बताते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में महिला पुलिसकर्मियों की संख्या डबल हो गई है दोगुनी हो गई है
2014 में जहां इनकी संख्या 1 लाख 5 हजार के करीब थी वहीं 2020 तक इसमें दोगुने से भी ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है और ये संख्या अब 2 लाख 15 हजार तक पहुंच गई है
यहां तक कि सेंट्रल आर्मेड पोलिस फोर्सेस में भी पिछले सात सालों में महिलाओं की संख्या लगभग दोगुनी हुई है
और मैं केवल संख्या की ही बात नहीं करता
आज देश की बेटियाँ कठिन से कठिन ड्यूटी भी पूरी ताकत और हौसले से कर रही हैं
उदाहरण के लिए कई बेटियां अभी सबसे कठिन मानी जाने वाली ट्रेनिंग्स में से एक स्पेशलाइज्ड जंगल वारफेयर कमांडोस की ट्रेनिंग ले रही हैं
ये हमारी कोब्रा बैटेलियन का हिस्सा बनेंगी
साथियो आज हम एयरपोर्ट्स जाते हैं मेट्रो स्टेशंस जाते हैं या सरकारी दफ्तरों को देखते हैं सीआईएसएफ की जांबाज महिलाएं हर संवेदनशील जगह की सुरक्षा करते दिखाई देती हैं
इसका सबसे सकरात्मक असर हमारे पुलिस बल के साथसाथ समाज के मनोबल पर भी पड़ रहा है
महिला सुरक्षाकर्मियों की मौजूदगी से लोगों में विशेषकर महिलाओं में सहज ही एक विश्वास पैदा होता है
वे उनसे स्वाभाविक रूप से खुद को जुड़ा महसूस करती हैं
महिलाओं की संवेदनशीलता की वजह से भी लोग उन पर ज्यादा भरोसा करते हैं
हमारी ये महिला पुलिसकर्मी देश की लाखों और बेटियों के लिए भी रोले मॉडेल बन रही हैं
मैं महिला पुलिसकर्मियों से अनुरोध करना चाहूंगा कि वे स्कूलों के खुलने के बाद अपने क्षेत्रों के स्कूलों में विसित करें वहां बच्चियों से बात करें
मुझे विश्वास है कि इस बातचीत से हमारी नई पीढ़ी को एक नई दिशा मिलेगी
यही नहीं इससे पुलिस पर जनता का विश्वास भी बढ़ेगा
मैं आशा करता हूं कि आगे और भी ज्यादा संख्या में महिलाएं पुलिस सेवा में शामिल होंगी हमारे देश की न्यू एजीई पोलिसिंग को लीड करेंगी
मेरे प्यारे देशवासियो बीते कुछ वर्षों में हमारे देश में आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जिस तेजी से बढ़ रहा है उस पर अक्सर मुझे मन की बात के श्रोता अपनी बातें लिखते रहते हैं
आज मैं ऐसे ही एक विषय की चर्चा आपसे करना चाहता हूँ जो हमारे देश विशेषकर हमारे युवाओं और छोटेछोटे बच्चों तक की कल्पनाओं में छाया हुआ है
ये विषय है ड्रोन का ड्रोन टेक्नोलॉजी का
कुछ साल पहले तक जब कहीं ड्रोन का नाम आता था तो लोगों के मन में पहला भाव क्या आता था सेना का हथियारों का युद्ध का
लेकिन आज हमारे यहाँ कोई शादी बारात या फंक्शन होता है तो हम ड्रोन से फोटो और वीडियो बनाते हुए देखते हैं
ड्रोन का दायरा उसकी ताकत सिर्फ इतनी ही नहीं है
भारत दुनिया के उन पहले देशों में से है जो ड्रोन की मदद से अपने गाँव में जमीन के डिजिटल रेकॉर्ड तैयार कर रहा है
भारत ड्रोन का इस्तेमाल ट्रांसपोर्टेशन के लिए करने पर बहुत व्यापक तरीके से काम कर रहा है
चाहे गाँव में खेतीबाड़ी हो या घर पर सामान की डिलिवरी हो
आपातकाल में मदद पहुंचानी हो या कानून व्यवस्था की निगरानी हो
बहुत समय नहीं है जब हम देखेंगे कि ड्रोन हमारी इन सब जरूरतों के लिए तैनात होंगे
इनमें से ज़्यादातर की तो शुरुआत भी हो चुकी है
जैसे कुछ दिन पहले गुजरात के भावनगर में ड्रोन के जरिए खेतों में नैनोयूरिया का छिड़काव किया गया
कोविड वैक्सीन अभियान में भी ड्रोन्स अपनी भूमिका निभा रहे हैं
इसकी एक तस्वीर हमें मणिपुर में देखने को मिली थी
जहां एक द्वीप पर ड्रोन से वैक्सीन पहुंचाई गईं
तेलंगाना भी ड्रोन से वैक्सीन डिलिवरी के लिए ट्रायल्स कर चुका है
यही नहीं अब इंफ्रास्ट्रक्चर के कई बड़े प्रोजेक्ट्स की निगरानी के लिए भी ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है
मैंने एक ऐसे यंग स्टूडेंट के बारे में भी पढ़ा है जिसने अपने ड्रोन की मदद से मछुआरों का जीवन बचाने का काम किया
साथियों पहले इस सेक्टर में इतने नियम कानून और प्रतिबंध लगाकर रखे गए थे कि ड्रोन की असली क्षमता का इस्तेमाल भी संभव नहीं था
जिस टेक्नोलॉजी को अवसर के तौर पर देखा जाना चाहिए था उसे संकट के तौर पर देखा गया
अगर आपको किसी भी काम के लिए ड्रोन उड़ाना है तो लाइसेंस और परमिशन का इतना झंझट होता था कि लोग ड्रोन के नाम से ही तौबा कर लेते थे
हमने तय किया कि इस माइंडसेट को बदला जाए और नए ट्रेंड्स को अपनाया जाए
इसीलिए इस साल 25 अगस्त को देश एक नई ड्रोन नीति लेकर आया
ये नीति ड्रोन से जुड़ी वर्तमान और भविष्य की संभावनाओं के हिसाब से बनाई गई है
इसमें अब न बहुत सारे फॉर्म्स के चक्कर में पड़ना होगा न ही पहले जितनी फीस देनी पड़ेगी
मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि नई ड्रोन पॉलिसी आने के बाद कई ड्रोन स्टार्टअप्स में विदेशी और देसी निवेशकों ने निवेश किया है
कई कंपनियां मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट्स भी लगा रही हैं
आर्मी नेवी और एयर फोर्स ने भारतीय ड्रोन कंपनियों को 500 करोड़ रुपये से ज्यादा के आर्डर भी दिए हैं
और ये तो अभी शुरुआत है
हमें यहीं नहीं रुकना है
हमें ड्रोन टेक्नोलॉजी में अग्रणी देश बनना है
इसके लिए सरकार हर संभव कदम उठा रही है
मैं देश के युवाओं से भी कहूँगा कि आप ड्रोन पॉलिसी के बाद बने अवसरों का लाभ उठाने के बारे में जरूर सोचें आगे आएं
मेरे प्यारे देशवासियो यूपी के मेरठ से मन की बात की एक श्रोता श्रीमती प्रभा शुक्ला ने मुझे स्वच्छता से जुड़ा एक पत्र भेजा है
उन्होंने लिखा है कि भारत में त्योहारों पर हम सभी स्वच्छता को सेलिब्रेट करते हैं
वैसे ही अगर हम स्वच्छता को हर दिन की आदत बना लें तो पूरा देश स्वच्छ हो जाएगा
मुझे प्रभा जी की बात बहुत पसंद आई
वाकई जहाँ सफाई है वहाँ स्वास्थ्य है जहाँ स्वास्थ्य है वहाँ सामर्थ्य है और जहाँ सामर्थ्य है वहाँ समृद्धि है
इसलिए तो देश स्वच्छ भारत अभियान पर इतना जोर दे रहा है
साथियो मुझे राँची से सटे एक गाँव सपारोम नया सराय वहाँ के बारे में जान कर बहुत अच्छा लगा
इस गाँव में एक तालाब हुआ करता था लेकिन लोग इस तालाब वाली जगह को खुले में शौच के लिए इस्तेमाल करने लगे थे
स्वच्छ भारत अभियान के तहत जब सबके घर में शौचालय बन गया तो गाँव वालों ने सोचा कि क्यों न गाँव को स्वच्छ करने के साथसाथ सुंदर बनाया जाए
फिर क्या था सबने मिलकर तालाब वाली जगह पर पार्क बना दिया
आज वो जगह लोगों के लिए बच्चों के लिए एक सार्वजनिक स्थान बन गई है
इससे पूरे गाँव के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया है
मैं आपको छत्तीसगढ़ के देऊर गाँव की महिलाओं के बारे में भी बताना चाहता हूँ
यहाँ की महिलाएँ एक स्वयं सहायता समूह चलाती हैं और मिलजुल कर गाँव के चौकचौराहों सड़कों और मंदिरों की सफाई करती हैं
साथियो यूपी के गाज़ियाबाद के रामवीर तंवर जी को लोग पोंड मन के नाम से जानते हैं
रामवीर जी तो मेकेनिकल इंजिनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद नौकरी कर रहे थे
लेकिन उनके मन में स्वच्छता की ऐसी अलख जागी कि वो नौकरी छोड़कर तालाबों की सफाई में जुट गए
रामवीर जी अब तक कितने ही तालाबों की सफाई करके उन्हें पुनर्जीवित कर चुके हैं
साथियो स्वच्छता के प्रयास तभी पूरी तरह सफल होते हैं जब हर नागरिक स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी समझे
अभी दीपावली पर हम सब अपनी घर की साफ़ सफाई में तो जुटने ही वाले हैं
लेकिन इस दौरान हमें ध्यान रखना है कि हमारे घर के साथ हमारा आसपड़ोस भी साफ़ रहे
ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम अपना घर तो साफ़ करें लेकिन हमारे घर की गंदगी हमारे घर के बाहर हमारी सड़कों पर पहुँच जाए
और हाँ मैं जब स्वच्छता की बात करता हूँ तब कृपा कर के सिंगल उसे प्लास्टिक से मुक्ति की बात हमें कभी भी भूलना नहीं है
तो आइये हम संकल्प लें कि स्वच्छ भारत अभियान के उत्साह को कम नहीं होने देंगे
हम सब मिलकर अपने देश को पूरी तरह स्वच्छ बनाएँगे और स्वच्छ रखेंगे
मेरे प्यारे देशवासियो अक्टूबर का पूरा महीना ही त्योहारों के रंगों में रंगा रहा है और अब से कुछ दिन बाद दिवाली तो आ ही रही है
दिवाली उसके बाद फिर गोवर्धन पूजा फिर भाईदूज ये तीन त्योहार तो होंगेहीहोंगे इसी दौरान छठ पूजा भी होगी
नवम्बर में ही गुरुनानक देव जी की जयंती भी है
इतने त्योहार एक साथ होते हैं तो उनकी तैयारियाँ भी काफी पहले से शुरू हो जाती हैं
आप सब भी अभी से खरीदारी का प्लान करने लगे होंगे लेकिन आपको याद है न खरीदारी मतलब वोकल फोर लोकल
आप लोकल खरीदेंगे तो आपका त्योहार भी रोशन होगा और किसी गरीब भाईबहन किसी कारीगर किसी बुनकर के घर में भी रोशनी आएगी
मुझे पूरा भरोसा है जो मुहिम हम सबने मिलकर शुरू की है इस बार त्योहारों में और भी मजबूत होगी
आप अपने यहाँ के जो लोकल प्रोडक्ट्स खरीदें उनके बारे में सोशल मीडिया पर शेयर भी करें
अपने साथ के लोगों को भी बताएं
अगले महीने हम फिर मिलेंगे और फिर ऐसे ही ढ़ेर सारे विषयों पर बात करेंगे
आप सभी का बहुतबहुत धन्यवाद नमस्कार